और बाहर पानी का डब्बा रखा हुआ और बाहर एक गाड़ी इ --

टेंट लगी हुई है और सामने एक एक स्टेज बना हुआ है सीढ़िया है।

एक बड़ा सा गार्डन है जिस गार्डन में हरी घास जमी हुई है और ए घासों से वेलकम लिखा हुआ हैं।

हरे-भरे बहुत से बहुत से पेड़-पौधे भी है बादल काला और सफेद है।

बना हुआ है लाइट लगी हुई है सामने एक लाल कलर का एक काले कलर का एक कार खड़ी हुई है और एक क उसके बगल में --

मंदिर है जिस मंदिर में ऐ-एक सरस्वती जी बिराजमान है ।

और अगल बगज पेड़ हरे पेड़-पौधे भी है बादल नीला काला सफेद है।

सो पत्तियां लगी हुई है और फूल भी लगे हुऐ है और म हरे घास जमे हुए हैं।

अगल-बगल भी फूल भी लगे हुए है पौधे लगे हुए है और हरे भरे पेड़-पौधे भी है बादल काला है।